एक ये डॉक्टर का केबिन है जहां पर डेंटिस्ट की कुर्सी लगी है।

बोर्ड लगा हुआ है। दूसरी तरफ एक बाइक खड़ी है।

है ये सर्विस सेंटर है।